एक इंसान दिखाई दे रहा है जिसका चेहरा स्पष्ट रूप से नजर नहीं आ रहा--

सूरज की रोशनी टेबल पे पड़ रही है।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

बाउंड्री भी दिखाई दे रही है।

एक ब्लू कलर का बकेट भी दिखाई दे रहा है और ऑरेंज कलर का बकेट ।

है और लाइटे दिखाई दे रही है।